बहोत से पेड़-पौधे दिख रहे हैं सामने और आसमान दिख रहा है खुला।

खुला सा आसमान दिख रहा है। पेड़ पोधे दिख रहे हैं। बिल्डिंग दिख रही है।

और बहुत से व्यक्ति यहाँ पर अ दिख रहे सामने की साइड अ सीढ़ियां दिख रही हैं बिजली का खंभा दिख रहा है।